यह फोटो एक गैराज की फोटो है।

यह फोटो एक मैदान की फोटो है जहां मैदान में बहोत जा छोटे छोटे जानवर हैं।

यहां पर जो पी_सी में पिक्चर दिखाई गई है उसी का बहुत बड़ा पैंफलेट लगाया गया है।